ये एक सैलून की शॉप है जिसका नाम काल दाढ़ी स्पाइन सैलून है यहाँ पर बहोत अच्छे-अच्छे --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

साइड में उसमें जो कुछ लोग जो जा रहे हैं और साइड में कुछ बुमटी हैं और बुमटी पे कुछ लोग खड़े हुए हैं सिलिंडर से और एक सामने बहुत बड़ा मंदिर है।

ये तालाब है यहां पर तरह-तरह की बोट्स वगैरा और ये बोट्स क्लब है यहां पर एक ग्रीन कलर की --

और यहां पर यहां पर घास भी लगी हुई है कहीं-कहीं घास है कहीं हेई नहीं है।